और ए में लोग स्नान कर अच्छा लग रहा है।

खेत लग रहा है। बगल में फूल लगाया गया है। बड़ा-बड़ा पौधा भी है फूल का चारो तरफ हरे-भरे हैं।